यहां पर बहुत सारे बच्चे और एक महिला है।

एक ए_सी लगी हुई है।

दीवारों पर लाल पीला और नीला कलर हुआ है।

यहां पर फुलझड़ियो से सजावट की गई है।

लोहे के जाल के अंदर बंद हैं।

यहां पर एक दुकान है जिसके अंदर--

सफ़ेद रंग की एक गाड़ी खड़ी हुई है सामने दरवाजे लगे हैं।

नीले रंग की कुर्सी है सामने दीवार पर नीला कलर हुआ है उसके ऊपर--

और कुर्सियां रखी हुई है।

सामने ऊपर बहुत सारे गुड्डे गुड़िया टंगी हुई है।

बराबर में धुआं उठा हुआ है।

ऊपर लाइटे लगी हुई हैं एक बैग रखा हुआ है।

जो नीचे से काले ऊपर से पीले रंग के हैं।

एक लाल रंग की है जिसका ढक्कन खुला हुआ है।

दो काले डब्बे रखे हुए हैं।

और एक ऊपर मूर्ति है।